तस्वीर में एक दुकान दिखाई रही है जहाँ पर खाने-पिने की सामग्री मिलती है उसके बाजू एक शटर बंद है एक पुरुष बैठा हुआ है ऊपर एक बोर्ड पर एक औरत दिख रही है।

तस्वीर में एक दुकान नज़र आ रही है जहाँ पर सजावट के सामान रखे हुए है फूल और भी अन्य चीजे है।

में एक बहुत बड़ी इमारत दिख रही है जिस पर विभाग आयु आयोजित कार्यालय लिखा हुआ है आप दो बड़ी-बड़ी लाइट जल रही है।

एक जिम की तस्वीर है जहाँ पर काले रंग का सामान रखा है।